यहां पे तालाब है और बगल में मगरमच्छ है और ये बहोत सारे पत्थर ईंटे सब है।

बाइक है रखा हुआ जो अभी नहीं चलाया जा रहा है बाकी सब वातावरण एकदम मस्त है।

स्विमिंग पूल है तीन स्विमिंग पूल है बगल में घना जंगल है और उसके भी बगल में एक टंकी भी है।

वो जीम एक एक्सरसाइज होता है जहां पर युवक को चलाया जाता है उससे होता ये है कि पैर का जो दर्द होता है वो छूट जाता है।

कार दिखाया जा रहा है कार दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार है इसका नंबर प्लेट है बी आर जीरो सिक्स --

और ये बगल में भी आदमी लोग र रहे हैं।